ये एक गाँव में पुराने जमाने का किला बना हुआ है दो दुकानें है एक शटर है पीछे खेत और--

और सामने बहुत प्यारा पहाड़ हैं। और उसमे और छोटे-छोटे घर बने हुए है। और वहाँ पेड़ हैं और आगे मिट्टी है रेती भी है और--

ये एक अपार्टमेंट है इसमे तीन बाइक है एक आदमी है एक हेलमेट है रेड कलर की टी शर्ट पड़ा है सड़क है।

प्राइवेट हॉस्पिटल है इसमें दो बेड लगे होंगे शायद क्लिनिक भी है इसमें ब्राउन गेट है और दो डस्टबिन रखे हुए है इस पे दो फर्श है।

इसके सामने एक उसके ट्यूबलाइट की परछाई दिख रही है व्हाइट है व्हाइट कलर से ओर मार्बल पे टाइल्स पे लिखा हुआ है गोल्डन कलर से और भी लिखा हुआ है।

यह भव्य मार्ट है और उसमें कांच के गेट लगे हुए हैं व्हाइट कलर की सीढ़ी है।